एक टावर है जिसके ऊपर ब्राउन कलर पेंट किया गया है तथा ऊपर की तरफ एक पीतल का कलश बना हुआ है।

यह एक माउंटेन है जिसके ऊपर बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है चट्टान के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है जिसके बगल मै एक कैमरा रखा हुआ है।

अंदर की साइड में बहुत सारे व्यक्ति इधर-उधर घूम रहे है एक व्यक्ति के हाथ में छोटा बच्चा है चेयर रखी हुई है ऊपर सिरिंज लगी हुई है।

यह एक डॉकघर है जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा चैनल गेट लगा हुआ है बाहर की तरफ टेबल पर दो बूढ़ी औरतें बैठी हुई है।

स्टेज है जहाँ बहोत सारी चेयर रखी हुई है। चेयर के ऊपर लड़कियां बैठी हुई ने मास्क पहना हुआ है एक लड़की आगे की तरफ जा रही है।